सामने एक टेबल है जिस पे दो चेयर्स लगी हुई हैं टेबल पे एक लेप-कीपैड रखा हुआ है एण्ड साइड पे बहुत सारी टेबल्स लगी हैं।

एक जगह है जहा सामने एक पेट्रोल पम्प है ओर उसके सामने इंसान दिख रहा है साइड में एक ग्रीन कलर का--

सामने बाले वॉल पे साइड में टीवी लगा है नीचे ब्लैक कलर का गेट है उसके साइड में एक ब्लू कलर का पोस्टर साइड में ब्लू गेट है उसके साइड --

ये भी एक पेट्रोल पंप का नजारा दिख रहा है सामने एक बाइक पे पर हेलमेट लगाया हुआ कोई इंसान बैठा हुआ है और उसके साथ --